सैलून के बाहर एक रेड कलर का बोर्ड लग रहा है।

इस रोड पर साइड में कीचड़ उछला हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है।

इस नदी के बराबर में कुछ हरे हरे पेड़ पौधे भी हैं।

और जमीन पर इंटरलॉक ईट भी लगी है।

इस देयरी के बाहर कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं।

एक ने लड़की ने पिंक कलर का फ्रॉक पेहना हुआ है।